पीले कलर का कपड़ा पहना हुआ है घास दिख रहा है मैदान है पेड़े है कचरा है रेड कलर दिख रहा है व्हाइट दिख रहा है नीला हरा ब्लैक पेड़े ताड़ की बिजली की खंभे।